जिसमें एक का नंबर है एम_एच फोर जी बी_ई --

देखने से मालूम चलता है कि यहां पर नए कंडीशन की फोर व्हीलर गाड़ी सेल करने का यह दुकान दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल चकाचक कंडीशन में है।

कुछ टीचर लोग भी यहां पर खड़े हुए हैं और एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं ऐसा लग रहा है मानो--

घर का यह एक दृश्य ऐसा है कि जिसका सीलिंग जो है एस्बेस्टस से बना हुआ है।

ये ढलाई वाला घर दिखाई नहीं दे रहा है और इस घर में--

और एक बस जो है उस पर जो लिखा है उसको पढ़ने में असमर्थता जता रहे है। दोनों बस काफी बड़ी-बड़ी बस दिखाई दे रही है। फूली ए_सी बस है।

किसी घर के अंदर का यह एक दृश्य दिखाई दे रहा है।

और कालीन पर हाथ से कारीगरी की जाती है। उसी तरह का यहां घर दिखाई दे रहा है। यहां पर एक साइड में काफी सारे कालीन रखे हुए हैं।